यह एक बस स्टैन्ड है बस स्टैन्ड मे बस खड़ी है बस के सामने कुछ पसिंजर खड़े है ।

ओ खड़ी होकर स्पीच दे रहीं है ।

यहाँ खुला मैदान है खुले मैदान मे बच्चों का पोर्ट हो रहा है शायद ये स्पोर्ट टाइम है ।

यहाँ छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे है सामने जिम फर्श पर बोहत सारे रिंग भी रखी हुई है ।

ये बच्चे उर्दू सिख रहे है सामने बैठ के मोलवी साहब बच्चों को उर्दू सीखा रहे है ।

यह एक बोहत बड़ी नदी दिख रही है नदी पानी से पूरी भारी हुई है ।

सामने खुली सड़क है खुली सड़क पे टेम्पो खड़ा है ।

लड़की लड़किया दौड़ लगा रहे है पीछे पहाड़ दिख रहा है फील्ड बहुत ही बड़ा है ।